यह एक बहोत सुंदर प्लेस दिख रहा है जहां पे हरे भरे--

अर दो तीन लड़कियां ट्रेन का वेट कर--

दही भी दिख रहा है और बहोत सारे--